एक आग के जैसा भी जल रहा है।

ताड़ का पेड़ है बड़ा -बड़ा --

फूलो से बोहोत अच्छा से सजाया गया है स्टेज को --